एक गार्डन दिख रहा है इसमें जो है बारिश हो रही है।

अ रेलवे प्लेटफार्म दिख रहा है प्लेटफार्म जो है साफ सुथरा है बगल में जो है गाड़ी खड़ी है।

और लेकिन प्लेटफार्म पे आदमी नहीं कोई दिख रहा हैं।

नीचे जो है बाइक खड़ी हुई है कई बाइके हैं छ सात बाइक है एक आदमी दिख रहा है और अ बिल्डिंग खंबा दिख रहा है खंभे डिंग है।

और निक बीच में केले का झाड़ है ग्री ग्रीन कलर की लता दार जो है।

ये एक सैलून है सैलून अच्छा दिख रहा है एक आदमी खड़ा हुआ है बाल क बाल दाढ़ी कराने का सैलून है सै--